उसके दूसरे तरफ रेड और ब्लू कलर के पियागो लगे हुए हैं।

कुछ ब्लू कलर के है कुछ ग्रीन कुछ रेड --

जहां ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं कांच के रैक बने हुए हैं।

यह चित्र एक फॉल की है।

पेड़ो में आधे कलर किए हुए हैं व्हाईट कलर के थोड़े से रेड कलर के।

चित्र एक गिफ्ट शॉप की है।

वॉल चेन लटकों वाया है ऊपर।

नीचे वाले एक्वेरियम में पिंक कलर की लाइट लगी हुई है।

दो पानी की पाइप दिखाई दे रही है।

के पीछे सिल्वर कलर की और इसके बगल में हल्का सा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर की कार है।

चित्र मे घर बना रहे हैं।

लगी हुई है एक चेयर दे र--

कोने में वाइट कलर का छोटा पंखा है।

कुछ पेड़ सुख चुके हैं झाड़ी उगे हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है जिसने टोपी पहनी हुई है फोन पे बाते कर रहा है।

ये चित्र यामाहा स्कूटी शोरूम की है।

ये चित्र किसी ढाबे की है।

इस चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है हरमू हाउसिंग कॉलोनी शाखा।

हल्की सी धूप दिखाई दे रही है।

तीन नाव रखी हुई है टूटी हुई।

इस चित्र में रोड पर एक ऑटो खड़ी हुई है।